एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने हरे रंग की शर्ट पहन रखी है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी हुई --

एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने जूते पहन रखे हुए हैं।

एक आदमी स्वेटर पहने हुए रिक्शा चला रहा है एक साइकिल है।

पार्क के चारों तरफ गड्ढे खुदे हुए हैं जिनमें बोहोत सारे हरे पेड़ लगे हुए --

एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

एक नीले रंग की बस खड़ी है जिसपे अमर ज्योति लिखा हुआ है।